नीचे जमीन पे कुछ जंगली घासे उगी हुई है वहां पे बहुत सारी बकरियां खड़ी हुई है।

और उसके ओर आदमी देख रहा है जिसने बनियान और लोअर पहनी हुई है वहाँ पर कसरत करने की बहुत सारी मशीनें रखी हुई हैं जो लाल कलर की हैं।

नीला आसमान नजर आ रहा है जिसके नीचे एक बहोत बडा बिजली का टावर नजर आ रहा है उसके ऊपर कैमरे लगे हुए हैं।

एक हवाई अड्डा नजर आ रहा हैं जहां पर बड़े-बड़े अक्षरों मे नो एंट्री का लाल कलर का बोर्ड रखा हुआ है।

बकेट ओन और पायदान और बहुत सा समान रखा हुआ हैं वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने शर्ट पैंट पेहनी भी है।

नजर आ रहा है जिसको हरे कलर से पुता गया है उसका चेना गेट दिखाई दे रहा है जिसके अंदर एक दरवाजा है बाहर की तरफ हमे बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे है ।

उस बिल्डिंग के ऊपर हमें कुछ पौधे नज़र आ रहे हैं। एक वायर नज़र आ रहा है।

एक शो-केस रखा हुआ है जिसके ऊपर बहुत सारे किताबें रखी हुई है।

टॉप रखा हुआ है। वहाँ पर एक पेपर और एक पेन रखी हुई है।

नदी दिखाई दे रही है जिसके अंदर एक नीले कलर की नाव है उस नाव के ऊपर झंडे लगे हुए है जिसमे से एक झंडा भगवा कलर का है ।

एक बिजली का खंभा नजर आ रहा है जिसके ऊपर लाइट लगी हुई है उस बिल्डिंग के बाहर हमें दो बाइक दिखाई दे रही है जो नीले और लाल कलर की है |

टेबल दिखाई दे रही है जिसके ऊपर एक नीला कपड़ा बिछा हुआ है उस टेबल के ऊपर एक पन्नी में कुछ --

ऊपर कुर्सियों के ऊपर एक छत बनी हुई है जो जिसके ऊपर टीन लगे हुए हैं।

उस गार्डन में बैठने के लिए एक टेबल रखी लगी हुई है जिसके पास में एक हरे कलर का डस्टबिन दिखाई दे रहा है गार्डन में से हमें ए --

दीवार के उस तरफ हमे एक लड़का दिखाई दे रहा है।

ऊपर दीवार है जहां पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है।